सामने के चित्र में देख रहक्ल बानी जहाँ हमनी के एगो बड़ा सा होटल दिखाय दे रहल वा।

ई उहे जगह है जहां से गंगा मैया निकलेनी । ई ईहाँ पे ही सबसे भव्य प्रकार के सबसे दिव्य प्रकार के आरती कईल जाला।

इनमे कुछ आदमी और भी कुछ बाड़न इनमे ढेर सारा पंखा लाईटस भी मौजूद बा इन बड़ा सा दुकान में ढेर सारा चोकलेट और इमें अनेक प्रकार की मिठाई भी उपलब्ध बा।

ई एकरा मदद से हमनीके कोनू भी किताब पढ़ सकतानी एमे हर प्रकार के किताब मौजूद बा वे।

जेसे की देख रहे हो पानी जी की इस क्षेत्र में में बहुत ही सुन्दर सा सजावट कइल गइल बा एकरा आसपास कुछ गहरे भी दिखाई दे रहल बाड़े।